बैंक ऑफ़ इंडिया दिखाई दे रहा है जहां पास एक ए_टी_एम खुला हुआ है।

फोटो पे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है।

बच्चों के खिलौने और बच्चों के बैट दिखाई दे रहे हैं साथ में यहां टेबल स्टैंड भी रखा हुआ है।

फूलों से सजाया गया है बाहर की तरफ में बहुत बड़े पोस्टर में यहाँ एडवरटाइज़मेंट किया गया है पांच के बाद बड़े --

यहां पास बहोत सी औरते खड़ी हुई है।

इस फोटो पे मुझे बाहोंत सारे अलग अलग रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर बहोत से लोग खड़े हुए हैं साथ में यहां पास बांस के पोल गड़ाए गए हैं।

कपड़े चेंज कर रहे हैं और यहां पास बहोत सारे नंबरों को लिखा गया है साथ में यहां पास बहोत सारी--

और यहां पास बहोत से लोग बैठे हुए हैं और चारों ओर--

पहाड़ है और कुछ यहां पास नदी भी हैं यहां पास एक बहोत बड़ा टैंकर खड़ा हुआ है।

बहोत सारे बादल छाए हुए हैं और यहां पर बहुत सी जाली लगाई गई है और--

और यहां पास बहोत सारे अलग अलग तरह की जालियें लगाई गई हैं।

साउंड बॉक्स लगाए गए हैं और यहाँ टाइल्सोँ से सजाया गया है चारों ओर फूल लगाए गए हैं और यहाँ पस बहोत सी लाइटें --